इस मैदान के चारो तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगे नजर आ रही है।

इस मंदिर का रंग मुझे सफेद वह सुनहरे रंग का नजर--

लड़कियों के कपड़ों की दुकान नजर आ रही है।

सामने मुझे इस तस्वीर पर एक बड़ी सी कंपनी नजर आ र--

सामने मुझे एक बड़ी सी केक की दुकान नजर आ रही है।

जिसमें एक टेबल पर एक प्लेट में चिकन बिरयानी रखी हुई नजर--

जिसमें एक आदमी एक बच्चे के बाल काटता नजर आ रहा है।

सामने मुझे एक बढ़िया सा--

इस टेबल पर मुझे तीन काले रंग की कुर्सियां भी रखी हुई नजर आ रही हैं।

सामने मुझे इस तस्वीर में--

सामने मुझे इस तस्वीर पर एक हॉस्पिटल नजर आ रहा है।

इस बैंक के ठीक बगल में एक एस_बी_आई ए_टी_एम --

इस रथ यात्रा पर मुझे ऊपर एक आदमी वेह कुछ लोग खड़े हुए नजर--

एक बहुत ही बड़ा सा कंप्यूटर लैब नजर आ रहा है।

तथा यह जेंट्सो के कपड़ों का शोरूम है।

इस मजार पर बाहर बहुत सारी कैंडल जले हुए हैं।

एक सामने मुझे एक बहोत ही बड़ा सा पहाड़ी इलाका नजर आ रहा है।

इस दुकान के बहार बहोत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है।

ठीक सामने मुझे एक बड़ा सा जंगल नजर आ रहा है।

इस तस्वीर पर मुझे एक पेट्रोल पंप नजर--

इस ठेले पर मुझे आलू बंडा--